और साइड में देखियेगा लंबे लंबे हरे हरे पेड़ भी नजर आ रहे हैं और काफी सारी पब्लिक यहां पर दिखाई दे रही है।

ब्लू कलर की पैंट पहन रखी काले कलर की शर्ट पहन रखी है उसके पास में एक महिला भी है।

काफी सारे घर यहां पर दिखाई दे रहे है और एक बीच में मैदान भी नजर आ रहा है।

और साइड में एक साइकल भी खड़ी हुई है और कुछ लोग पीछे की तरफ यहां पर खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर बिजली की तारे नजर आ रहे हैं यहां पर।

यह देखायेगा फ्रेंड्स काफी बड़ी नदी दिखाई दे रही है और काफी सारी पब्लिक है लोग यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और--

और दूर दूर थोड़े थोड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और रात का ये समय है।

काफी सुंदर लग रहा है और ये सारे लोग योगा करते हुए नजर आ रहे है।

नीचे देखिए लाल कलर से लाल कलर की कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ उन्हें देख रहा है।

यहां देखिएगा फ्रैंडस काफी सारे सोफे नजर आ रहे है यहां पर और लाइटें भी नजर आ रही है और काफी सुंदर सा ये हॉल दिख रहा है।